लड़की बैठी हुए जो चाय पी रही है। दो बच्चे मास्क लगाए हुए हैं यहाँ पे सभी बुक्स मिलते हैं। सभी क्लास्सेस का बहोत बढ़ा बुक का व्होल सेलर है।